और न्यूट्री नगेट्स का पैकेट फेरन लवली ये सब लटका हुआ है ।

इसकी छत सफ़ेद रंग की हैं उसमे सफ़ेद लाइटें लगी हुई हैं ।

वो नारंगी है हरा है और भूरा है।

जो गुलाबी रंग का है उसकी बॉडर काले रंग की है घर के गेट जो है वो खुला हुआ है ।

एक छोटा गेट है जो लोहे का है । एक बड़ा गेट है ।

यह एक मगरमच्छ है जो मटमेले रंग का है।